यहाँ रेड कलर की कार है यहाँ एक और गराज मे खड़ी हुई है और ये व्यक्ति बैठा हुआ है पानी--

अह यहा एक छत है छत पर तीन लडकिया योगा कर रही है।

बस मे सवारी बैठी हुई है और साइड मे भी बस खड़ी हुई है और पीछे पेड़ दिखाई रहे है।

रखी हुई है और व्यक्ति यह मशीनोसे चटाई बना रहा है और लाइट जल रही है।

यहाँ रोड के बगल मे गाड़ी खड़ी हुई है और स्कूटी भी खड़ी हूई है और एक व्यक्ति अंदर जा रहा है और एक अन दो व्यक्ति अंदर--